उसके पीछे मुझे पेड़ दिखाई दे रहें है और ये शाम का समय हो रहा है यहां पर रोड पर से गाड़ियाँ आते जाते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत ही दिखाई दे रहा है।

पीछे आसमान में बादल दिखाई दे रहे है और यहाँ राइट साइड में मुझे घर भी दिखाई दे रहे हैं और यह देखने में बहुत शानदार और खूबसूरत दिखाई दे रहा है।

और ये ग्राउंड सरकोल सर्कुलर बना हुआ है उसके पीछे मुझे बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कई जगह पे बादल भी दिखाई दे रहे हैं एक इलेक्ट्रिक का खंबा भी दिखाई दे--

यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है आसमान बिलकुल साफ़-सुथरा और खुला दिखाई दे रहा है इसका मीनार भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ जाली लगी हुई दिखाई दे रही है टीन का शेड भी डला--